ये एक सूर्य-अस्त का फ़ोटो है | यहाँ पर दिख रहा है कि सूर्य-अस्त जा रहा है और दूर में एक लम्बा मीनर जैसा --

ये एक नदी है। नदी के चारों तरफ बोहोत सारे पेड़ दिख रहा है। पेड़ से नदी के चारों तरफ घिरे हुए हैं।

और नदी के ऊपर से पोल का तार गया हुआ है और ऊपर आसमान मे बोहोत सारा आ सफेद बादल दिख रहा है।

गया है और साइड में कुछ फैक्ट्री अ खड़ा है जैसे लग रहा है।

यहां पर अ डिफरेंट टाइप का अगरबत्तियां दिख रहा है।

ये चिंगरी मलाई कड़ी के लिए यूज़ होता है जिसका बहोत बड़ा- बड़ा सूंड है और ये जो सूंड होता है। इसको हम फेक देते हैं।

ये एक लाइब्रेरी है यहां पर बोहोत सारे किताबे यहां पर अ रखे गए हैं।

और ऊपर पुल से एक चूड़ा जैसा कुछ बन रहा है चारों धाम जैसा कुछ दिख रहा है और नीचे रेड एण्ड ग्रीन कलर का कार्पेट है।

बोहोत सारे धूल मिट्टी जम गए है उसके ऊपर।

और सामने जो अ केें पैनल जैसा दिख रहा है वहां पर मुर्गियों के लिए खाना दिया जाता है। मुर्गियों वहां से खाना खाता है।

और एक छोटा सा साइड टेबल है जहां पर कुछ कॉफ़ी के लिए कप मिल्क एंड इलेक्ट्रिक कैटल दिख रहा है।